यह एक हॉस्पिटल है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे साहुल हार्ट केयर सेंटर लिखा हुआ है।

यहां पर एक डी फ्रिज रखा हुआ है जिसके अंदर बहोत सारे अन्य अन्य प्रकार के केक रखे हुए हैं और बहुत सारे लाइटें जल रही है।

और पास में कुछ लड़के व लड़कियां खड़े दिखाई दे रहे हैं जोकि इन्हे देख रहे हैं और कुछ लाइट के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी खड़ा है और लाइटें जल रही हैं आदमी ए_टी_एम से पैसे निकाल रहा है गेट निकास लगा हुआ है जो की अंदर बाहर --

और एक लकड़ी की टेबल लगी हुई है जिसके अंदर कुछ कांच लगे हैं और कुछ ज्वेलरी रखी हुई है और ए_सी लगी हुई है।

यहां एक आदमी नीली ड्रेस पहने हुए खड़ा दिखाई दे रहा है मुंह पर मास्क लगा हुआ है पास में कुछ --

जिसके अंदर एक बैड लगा हुआ है जिसपे व्हाइट चद्दर बिछी हुई है और दो कुर्सियां रखी हुई है।

और बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे एम_आर मनी हैरी लिखा हुआ है और एक एक गाइडलाइन का भी पोस्टर लगा हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे लाइटें जल रही हैं और वहां पर एक कोने में कैमरा वाला वीडियो बना रहा है लाइट जला कर और आर --

जिनके पत्तियां भी दिखाई दे रही है।